यहां कई सारे बल्ब लगे हुए हैं एक सी_सी_टी_वी कैमरा है और बहोत सारे मशीनें हैं।

और बाहर में एक पानी का बोतल है मोटरसाइकिल है।